यहाँ सामने मे एक बस दिखाई दे रही हैं जो कि व्हाइट कलर की हैं एक ठेला लगी हुई हैं वहाँ पस --

पेड़ से गिरे हुए पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जो की काली काली लग रही है नीचे मैं हरी हरी घास लगी हुई है और साइड में बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिख रहे है।

स्टेडियम नगर पालिका निगम अम्बिकापुर लिखा हुआ है और--

यहाँ पास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है बाइक स्कूटी साइकिल दिखाई दे रही है बॉउंड्री घिरा हुआ है निचे नीचे में छोटी छोटी घांस लगी हुई है।

यहाँ पर बहुत बड़ी एक मंदिर दिखाई दे रही है जो कि बहुत पुरानी भी लग रही है ऊपर में झंडा लगा हुआ है ऐसी ही बहुत सारी मंदिरे दिखाई दे रही हैं।

वह और बहुत सारी गेटे जैसी दिखाई दे रही--

यह बाउंड्री के बाहर में भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है पीछे में घर भी दिखाई दे रहे है नीचे में छोटी-छोटी घास लगी हुई हैं।

मैदान जैसा घिरा हुआ है छोटी-छोटी घास इसमे लगी हुई है पीछे मे बड़े-बड़े पैड़ -पोधे भी दिखाई दे रहे है सामने मे एक दरवाजा दिखाई दे रहा हैं। .